अगल बगल मे बहुत सुंदर सी लाइटिंग की गई है।

इधर दस पंद्रह के मात्र में व्यक्ति खड़े होकर देख रहे हैं।

बहुत सुंदर सा हॉल है। सफेद कलर का हॉल है।

एक बहुत सुंदर सफेद कलर का बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर सौर प्लेट लगा हुआ है।

बहुत सुंदर सा गार्डन है और उनमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं व्हाइट कलर का येलो कलर का।

ये आगे दस पंद्रह के मात्रे में व्यक्ति खड़े हुए हैं।

नीचे पेड़ा भी रखा गया है उसके बगल में छोटे छोटे मूर्ति भगवान के रखे गए हैं।

पीछे एक बहुत सुंदर सा दारवाजा ब्लैक कलर का है।

कुर्सी बगल में एक चौकी लगाया हुआ है चौकी में बिस्तर लगाया हुआ है।

एक बहुत सुंदर सा कपड़े का दुकान है। दुकान मे ऊपर दस पंद्रह की मात्रा मे लाइट लगाया गया है।

और एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है और एक व्यक्ति सबसे ऊपर में भी खड़ा हुआ है और बांस बान रहा है।

और एक व्यक्ति बाहर में बाइक ले बाइक सवार एक व्यक्ति बैठे हुए हैं।

और इस के बगल में तीन चार बोरा रखा है गेहूं डाल के।

बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बनाया है गया है सफेद कलर का है।

बहुत सुंदर सी अ घेरावट भी किया गया है।

उसके सामने एक लंबा सा रस्सी बंधा हुआ है और उसमें कपड़े रखें हुए है।

शीशा लगा हुआ है उसके नीचे कुछ कपड़े रखें हुए हैं।

गल में दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

प्ले के सामने दो चार आदमी खड़े होके देख भी रहे है।

शीशे का गेट भी है उसके--